यह सीतामढ़ी का सिटाइन होटल हैं। इस सिटाइन होटल में --

ये एच.डी.एफ.सी. बैंक हैं इस बैंक में बहुत यात्री लोग आते हैं पैसा निकालते हैं।

यहाँ पर स्कूल बना हुआ है देखने से लगता है कि ये सरकारी स्कूल है वो पीला कलर से पेंट है इसमें बच्चे पढ़ने आते हैं।

यहां देख रहे हैं एक घर है इस घर में एक भेस बंधी हुई है उस भैंस का बच्चा भी है जैसे लग रहा है की भैंस दुधारू है काली रंग --